और अ पेड़ लगा हुआ है सामने स्कूल की बिल्डिंग है कलर है लाल सफेद और इधर पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर लैंप भी लगे हुए हैं जिसे सब कुछ देख सक --

दो लोगों ने टी_शर्ट पहेन रखी है जिसका कलर है ब्लू और व्हाइट ।

पीछे एक जंगल टाइप है इधर बहोत सारे पेड़ खड़े है लंबे लंबे एक नेट की इधर चादर लगी हुईं है जिसका कलर है ग्रीन --